जिस पर बहोत सारी बुक रखी हुई है और इस पे एक बड़ासा ब्लू कलर का पोस्टर लगाया गया है।

दुकान के बाहर एक ब्लू कलर की डस्टबिन --

वहाँ पर एक बेंच है जिस पर लोहा काटा जाता है।

यह फोटो इंडियन ऑयल पैट्रोलियम का है।

है और इसके पीछे पेड़ हैं और बिल्डिंगस हैं।

जिसमें बहोत सारे बच्चे ड्रेस पहन कर बैठे हुए हैं।

गेट से प्लांट को लगाया गया है और इस बिल्डिंग में बहोत सारी विंडोज हैं जो की देखने में काफी सुन्दर लग रही--

और खेतों में सफेद कलर की चीजें लगी हुई हैं।

यह फोटो एक बिल्डिंग का है जिसके ऊपर एक दैनिक जागरण का पोस्टर लगा हुआ है बड़ा सा--

इसमें पेड़ है और इस बिल्डिंग के आगे एक बड़ा सा गेट है।

एक बेड है बेड के ऊपर पिलो रखा हुआ है।

हम देख रहे हैं कि यहां पर एक लड़का जा रहा है रोड पर।

यह फोटो एक सिटी कैफे का है।

जो कि एक सिटी कैफे के आगे फोटो खिंचवा रहे हैं।

यह फोटो एक रोड एरिया का है जिसमें हम बहोत से गाड़ियों को रोड पर देख देख रहे हैं।

इसमें एक अ अ इंसान खड़ा हुआ है ऑटो के बगल में और इसमें एक बस भी है।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

यह फोटो एक अ रात के समय का है जो की ढाबे के बाहर का है।

और इस फोटो में इस फोटो में हम बाइक खड़े हुई है उस--

यह एक पूरा जनरल स्टोर का दुकान है जिसमें बहोत सारे बच्चों से रिलेटेड सामान रखी गई हैं।

यह पिक्चर एक रोड साइड पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं कि रोड के साइड में बहुत सारी भैन खड़ी हुई हैं जो कि मारुति हैं।